केसरिया रंग का मुझे दिख रहा हैं और यहां तालाब के किनारे पर ये निकले हुए है।

और रेलगाड़ी अभी रुकी हुई है फिलहाल तो शायद से।

आ नदी का जो है मतलब कि जहां तक नदी आती थी पहले वहां इसका जो है पत्थर है अह --

और यहाँ पर एक अ आदमी यहाँ सामने गेट से अंदर जा रहा हैं।

और इन गाड़ियों के बीच में एक बाइक वाला भी है बाइक लेके आ रहा है।

और पीछे से मुझे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स --

अ किचन को बनाया गया है सामने एक गैस स्टोव रखा गया है इसके ऊपर एक कढाई है छोटी सी।

इस फोटो में मुझे एक क्लास रूम दिख रहा है।

कुछ जो है सर्टिफिकेट्स दिख रहे है और यहां पर कुछ फोटोस भी है।

ये किला बहोत बड़ा है और सामने इसके एक गाड़ी लगी हुई है।

जो किसी रेस्टोरेंट में आए हुए हैं।

एक रे अह होटल रेस्टोरेंट में बैठे हुए बहुत सारे लोग दिख रहे हैं।

इस फोटो में मुझे एक सामने लड़का दिख रहा है जो जिम में वर्कआउट करने आया हुआ है।

सुंदर दृश्य मुझे दिख रहा है पहाड़ों में।

इस फोटो में मुझे एक जेल दिख रही है।